यहॉं पर एक बड़ा सा इस्कूल दिखाई दे रहा है इसमें साइड मैं एक इस्टार लगा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर न अनाउंसमेंट चंगा लगा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा हैं।

यहाँ एक बहोत बड़ा मंदिर दिखाई दे रहा हैं यहाँ पर बहोत सारे घर दिखाई दे रहे है।

दिखाई दे रहे हैं बहोत सारी झाड़ियां ठेला दिखाई दे रहा है घास दिखाई दे रहा है बहोत सारे पौधा घास दिखाई दे रहा है ।

उसमे पानी नज़र आ रहा है आसपास बहुत सारी झाड़ियां नजर आ रही है।